यह सब तालाब है यह तालाब में काफी पानी भी है इस तालाब के किनारे मैदान है यह मैदान काफी हरी-भरी है यहाँ पर अनेक बड़े-बड़े पेड़ भी हैं यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ भी हैं यहाँ पर कुछ पौधे भी लगाये गए हैं ।

किताब की दुकान है इस कि किताब दुकान का नाम वेदांता बुकस स्ट बोल्ड है यहाँ पर तरह-तरह के किताब है यह दुकान काफी किताब कॉपियो से भरी हुई है।

थे यह सड़क काफी चौड़ी है इस सड़क पे बहुत से गाड़ी आती जाती है इस सड़क के किनारे एक बगीचा है इस बगीचे में बड़े-बड़े पेड़ भी है इस बगीचे के किनारे में एक घर है यहाँ पर बोहोत से आदमी घुमने आते हैं।